जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है ये एक--

चित्रकले चित्रलेखन भी किया हुआ है।

और लाइट्स का भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है।